मोर का उपर का हिस्सा ब्लू है बीच का हिस्सा हरा है।

लडकी ने हरे कलर का टीशर्ट पहना है।

इदर्स कुछ समान रखे बहोत सारी गिटारे टंगी हुई रखी हुई दीवाल पे--

सभी ने साल टोपी ढका हुआ पहना है निचे मटी है।

निचे कैमरा मेन का ब्रांच है।

बहोत सारे पेन ड्राविंग बनाये हुए है पैन्टिन्ग --

एक बगलों दिख रहा है जिसकी खिडकिया दिख रही है कुछ--

सामने एक डैम दिख रहा है डेम में--

निचे एक डोरमेट लगा हुआ है दरवाजे के पास।

ये किसी का घर है सामने दो दरवाजे दिख रहे है दो खिडकिया दिख रही है।

कुछ समाने रखी हुई है कंप्यूटर रखा है कुछ मशीन रखे हुए है।

दीवारों पे कुच्छ पोस्टर टंगे हुए है।

पिछे तरफ में एक तिरपाल रखा हुआ है सामने एक कपड़ा रखा हुआ है।

एक ब्लू कलर का है एक पीले कलर का है एक लाल कलर का है उपर कट कट लगे हुए है सामने --

पिलर दिया हुआ है सामने एक बड़ा सा होल है।

सामने कुछ चेयर टेबल रखे हुए है उसे झाख दिया हुआ है।

तरफ में बड़े-बड़े पत्थर है ईट कंकड़ हैं।

रोड के दूसरी साइड कुछ घर दिख रहे है सामने पेड़ भी दिख रहे है बड़े बड़े --

जूता खुला हुआ दिख रहा है सामने कोई सोया है टब--

एक दरवाजा है खुला हुआ दरवाजा है दरवाजा का कलर --

यह एक बंगलो है बंगलो के बाहर काफी लाइट लगाई गई है सजाया गया है।

कुछ मजदुर है जो सर पे ईट उठाये--

एक सामने एक रस्सी रखी हुई है उपर बतिया लगी हुई है काफी सादे सब सादा कलर का है।

पीछे कुछ मशीने रखी हुई है।

एक टायर का दुकान है बहोत सारी टायर रखी हुई है गाडियों की टायर है।

एकबीच मट्टी का रस्ता गया है हम दो उस माटी के रस्ते के दूसरी साइड --

घर के बाहर एक स्कूटर लगा हुआ है स्कूटर के पास एक अच्छा झूला में बेठा हुआ है।

दुकान के अंदर भी कुछ लोग है।

अंदर चेयर पर बेठा अपना हेयर कट करवा रहा है।

दीवार पे कुछ तस्वीरे टंगी हुई है।

बहोत सारी घास है घास से सारे घास पे बहोत फरा हुआ है नीचे हरे हरे --

ढेर सारी पतंगे एक स्टार बना हुआ पतंग है एक कार्टून बना हुआ पतंग है।

यहा कुच्छ इटे पत्थर का ढेर है लाल लाल पथरे है।

कुछ हरे हर एपोधे है छोटे छोटे पोधे भी है।

काच का अलमारी रख भरा हुआ है अलमारी भी बहोत सामान से भरी हुई है।

वोश्रूम का दरवाजा खुला हुआ है सामने लगा हुआ है।

यहा सफ़ेद कलर का मार्बल लगा हुआ है पूरा--

हाथ में कैमरा बाइक लिए खडे है।

हमे कुछ पीले कलर के फुल दिख रहे है लाल और ओरे--

निचे एक पोस्टर दिखर हा है दो पोस्टर है।

उस पोस्टर में कुछ के तस्वीरे दी है।

रेलिंग लगा हुआ है और उसपे लिखा हुआ है।

हरे हरे घास है छोटे छोटे पोधे भी लगे हुए है।

मार्ट के चारो और बेठने की सीडिया लगाई है।

काफी छोटे छोटे घर दिख रहे है बड़े बड़े घर भी है।